जहां आगे की तरफ मुझे एक मोटरसाइकल दिखाई दे रही है।

सामने मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

जहां बिजली के पोल भी दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर बहुत सारे मसाले के पाकिट रखे गए हैं।

और हॉर्लिक्स के पाकिट भी दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर के तरफ एक बैनर लगा हुआ है।

सामने मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है।

सामने यहां मुझे एक बहुत बड़ा सा स्टैंड दिखाई दे रहा है।